लइकवा के एक आदमी चल रहा है उधर टैम्पू लगल है उधर।

यहाँ पे एक मंदील दिख रही है और मंदील के चारों ओर वहाँ से --

और उधर एक पोल है। पोलवा में बोर्ड लगा हुआ है लाइन गया है।

यहाँ पे एक मंदील है और मंदील के नीचे दो लोग --